एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है। बिल्डिंग पर बोर्ड लगे हुए हैं। आ बिजली का खंबा लगा हुआ नजर आ रहा है। बहोत सारी गाड़ियाँ रखी दिख रही है।

अ लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं | अ बोर्ड पर आर्य समाज मंदिर एटा लिखा हुआ है। सु स्वागतम लिखा है। दरवाजा खुला हुआ है।

आ खिड़कियाँ बनी हैं। खिडकियों से धूप अंदर आ रही है। ए सी लगा हुआ है। पंखे लगे दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में बहोत सारी किताबें रखी हुई नज़र आ रही हैं | एक जेन्ट्स खड़े हुए है | जेन्ट्स ने टी शर्ट और ब्लू रंग की जीन्स --

फोटो पर हार चढ़े हुए हैं | पूजा की हुई है | एक जेंट्स खड़ा हुआ है | सर पर टोपी पहनी हुई है | हाथों में घड़ी पहनी है।

ता हुआ नज़र आ रहा है | पीछे की तरफ़ दीवार पर कलरफूल पेन्टिंग की हुई दिखाई दे रही है |

इमेज में दो कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। पानी की बॉटल रखी हुई नज़र आ रही है। दीवार पर चाय के कप की पेंटिंग की हुई है।